मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में मुझे कुछ --

मुझे एक कूलर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे एक गैराज दिखाई दे रही है।